बहुत सारे घर दिख रहे हैं।

कुछ घर पेंट किये हुए है कुछ घर ऐसा ही--

तीन कलर से पेंट किये हुए है ब्लू --

और इधर पुराना जैसा एक बिल्डिंग है जो देखने में--

यहन पे घूमने का नजारा है बहुत --

ये जो बिल्डिंग देख रहे है।

और आगे टेम्पु लगा हुआ है और एक --

बना हुआ जो पानी स्टोक किया जाता है डंप --

पानी बाहर निकालने के लिए चार --

जो देखने में अच्छा भी लग रहा है और सुन्दर भी है।